यहाँ एक गाँव है गाँव के अंदर एक नदी है नदी के अंदर एक ब्रिज बनाया हुआ है।

यह एक गम चर्च जैसा लग रहा हे।

ये बहुत ही बड़ी लग रही है ठंडी का मौसम है क्योंकि सबने स्वेटर और शॉल ओढ़ी हुई हैं।

एक कपड़े की दुकान लग रही है जिसके अंदर अलग-अलग स्वेटर लगाए हुए है ये सब स्वेटर लेडिज स्वेटर लग रहे है।